ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

प्लेटफार्म पर मैं बहोत सारे लोगों को भी देख पा रही हूं।

बगल साइड में मुझे एक करकट दिखाई दे रहा है।

बगल में एक वेटिंग मशीन भी मैं देख पा रही हूं।

जिसके ऊपर मुझे एक लैपटॉप रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक मॉल देख पा रही हूं।

बहुत सारे सोफे और टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मैं एक दुकान देख पा रही हूं जहां पर लकड़ी के बहोत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस --

सामने में एक बड़ा सा गोदाम देख पा रही हूं।